वाइट और ब्लैक कलर की मशीन है वाइट कलर का पेंट है पूरा विंडो है एक मिरर लगे है।

बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ हैं सामने स्काई ब्लू और वाइट कलर से पेंट है वॉचमैन --

लड़की डांस कर रही है एक पैर ऊपर करी हुई है और एक हाथ से पकड़ी हुई है पीछे ब्लैक परदे लगे है।

यह एक फव्वारे का फोटो है वाइट कलर का फव्वारा है पानी गिर रहा है घांस है अँधेरा हो रहा है पीछे बहुत सारे पेड़ हैं।

एक लड़का बाइक पे जा रहा है कार है वाइट कलर की ऑटो है येल्लो कलर का भीड़ लगा है।

पेड़ लगे है बहुत सारे एक लड़का पैदल जा रहा है जो वाइट टीशर्ट और नेकर पहना है ब्लैक कलर का--

ये रोड़ का फोटो है दो भैसे जा रहे है एक आंटी जा रहे है।

ये एक तालाब का फोटो है जहाँ दो नांव है दो अंकल खड़े है।

ग्रीन टेबल है ब्लैकबोर्ड है वाइट कलर से पेंट है पूरा रूम में

ये एक ऑफिस का फोटो है रेड और ब्लैक कलर के चेयर है फैन लगा है।